और बहुत सारी पुस्तके दिखाई दे रही है ऊपर एक ट्यूब लाइट लगी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे हमे बहुत सारे पुरुष और महिलाए और बच्चे दिखाई दे रहे है सामने हमे एक घर दिखाई दे रहा है जिसका कलर ऑरेंज है।

इस तस्वीर में हम देख पा रहें हैं हमे एक --

इस तस्वीर मे हमे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने ग्रे कलर की टी-शर्ट और ऑरेंज कलर के जूते और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

ब्लैक कलर का ब्लेजर और फिरोजी कलर की शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है।

कांच का बॉक्स बना हुआ है नीचे गुलाबी कलर का --

रेड कलर की साड़ी और ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए है वह अपनी कत्थक का नृत्य दिखा कर ।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

एक बोरी पे रखे हुए एक पट्टिये के सहारे उस पर जा रहा है वो बोरी को ले जा रहा है दूसरे व्यक्ति उसके पीछे वो दूसरी बोरी को ले जा रहा है निचे --

आ चम्मच रखे हुए हैं उसके सामने एक काले कलर के प्लेट राखी है। एक कटोरी में चटनी रखी है जिसका कलर हला हरा है उसके अंदर --

इस तस्वीर में हमें बोहोत सारे लड़के दिखाई दे रहे है। एक लड़के ने ऑरेंज कलर की शर्ट एक ने काले कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

एक टंकी रखी है जिसका कलर काला है और सटेलाइट लगी हुई है उम्म --

अ पीले हरे ऑरेंज नीले कुछ बोरिये रखी हुई है जिनका कलर सफ़ेद है कुछ व्यक्ति खड़े हुए है कुछ व्यक्ति बैठे हुए है।

और सामने एक गेट लगा हुआ है जिसका कलर सफ़ेद है स्कूल के साइड में बाउंड्री बनी हुई है जिसका कलर सफ़ेद है उसके साइड में एक काला कलर के बॉक्स लगे हुए है जिनमे छोटे-छोटे पेड़ लगे है ।

पुरुष और महिलाएं और कुछ इंस्पेक्टर खड़े हुए है।

किराने की दुकान मे बहुत सारी बर्निन्गे दिखाई दे रही है किराने की दुकान में एक सटर लगा है सटर का कलर कत्थे है कुछ सीढ़ियां है सामने |